यहां पर एक खंबा भी है यहां पर बहुत सी लोग मछली काट रहे हैं।

आसपास लैंप लगी हुई है जो काफी बड़ी है।

सामने तालाब दिखाई दे रहा है इसके किनारे जालीदार दीवाल खड़ी हुई है।

यहां पर एक कमरा है इसमें बहोत सी बैंच पड़ी हुई है।